सवारी बैठा हुआ है और ये देखिये देख रहा है वहां पे चर्च है वहाँ पे और देख रहे है कितना सुंदर दृश्य है ये यहां देखने लायक है देख रहे है वहां पे कितना सुंदर लग --

मार्केट है यहाँ पे देखिए राजे शिवदाश के नाम से ये मार्केट प्रसिद्ध हें । ये देखिए कितना अच्छा बलून से सजाया हें। ये कितना सुंदर दृश्य हें । आप देख रहो हो वहा पे आदमी सब खड़ी हें । स्कार्पियो लगी हुई हें ।

प्लेनेट फैशन के नाम से एक मॉल है यहाँ पे प्रकार प्रकार के कपड़े मिलते में यहाँ के कपड़े सस्ते होते हैं ये एक प्राइस में बेचते हे मॉल हैं। यहाँ पे--

वहाँ बेंच लगी हुई है उधर देखिये सब खड़े हैं यहाँ पे सब घूमने भी आते हैं टहलने योगा सुबह में घूमने आते हैं।

आदमी सब आते हैं। बस पे घूमते हैं । और ये बहोत अच्छी बात है बस पे घूमना। और ये बस देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप देख रहे हैं वहां पे और आदमी भी खड़े हैं। एक आदमी खड़ा हुआ है बस ---

यहाँ पे फिल्म सिटी के भी लोग आते है कभी कभी रहते है यहाँ पे बहुत अच्छी बात है ये होटल

ये आजकल के जमाने में बहुत अच्छी बात है यूनिवर्सिटीयो का होना । बच्चो का विकास होती है इससे और ये कितनी अच्छी बात है। आप देख रहे यहां पे बिल्डिंग लगी हुई है टीवी लगी हुई है टिन सेट लगी हुई है और आप देख रहे कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो फोटो ग्रीन कलर की गेट है।